यहां पर एक कार खड़ी है और रोड पर ढेर सारे टाइल्स बिछी हुई है।

सामने ढेर सारे कपड़े लगे हुए हैं और कुछ जानवर नजर आ रहें हैं।

जिन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है।

इसके साइड में एक सोलर पैनल लगा हुआ है।

के अंदर वाइट कलर और ग्रीन कलर के डिब्बे में सामान दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक चर्च के बाहर का चित्र नजर आ रहा है जहां पर ढेर सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।